पिक्चर में बहोत सारे लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

पिक्चर में बहुत सारे टेम्पु चलती और रखी हुई दिखाई दे रही है। कुछ बाइक भी रखी --

सामने कुछ डिजाईन बना हुआ हैं फत्तरों से। फत्तरों का कलर सफ़ेद --

और एक बस पीली कलर की खड़ी दिखाई दे रही है। उसके सामने एक सफ़ेद कलर की जीप भी दिखाई दे रही है।

कुछ बसे रखी हुई दिखाई दे रही हैं एक आदमी रास्ते में बैग टांगता हुआ चलता दिखाई दे रहा है एक आदमी --

पिक्चर में एक जिम दिखाई दे रहा है। जिम में बहोत सारे एक्सरसाइज के मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।